inkscape उपयोग करके warli art for textile design पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न बनाना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
अब inkscape खोलते हैं पहले warli pattern डिज़ाइन बनाते हैं
file पर जाएँ
rectangle tool tool चुनें पूरे canvas को color करते हुए एक आयत बनाएं और इसे नीला रंग करें
ellipseटूल पर click करें canvas के बाहर एक वृत्त बनाएं फिर selector tool पर click करें
tool controls bar पर width और height को बदलकर 15 करें
इसका रंग नारंगी करें प्रदर्शित की तरह इसे canvas के नीचे लाएं
वृत्त को duplicate करने के लिए ctrl + d दबाएं
tool controls bar पर width और height को बदलकर 7 करें
duplicated किये हुए वृत्त को move वृत्त के नीचे बायीं तरफ लाएं
यह warli figure का शीर्ष है
go
ज्यामितीय आकृतियों की सूची दिखती है
tool controls bar पर width और height को बदलकर 20 करें
त्रिभुज को duplicate करने के लिए ctrl + d दबाएं इसे flip यानि पलटने के लिए v दबाएं
प्रदर्शित की तरह त्रिभुजों को शीर्ष के नीचे व्यवस्थित करें
यह warli आकृति का शरीर है
rectangle tool चुनें और शीर्ष और शरीर के बीच में एक line बनाएं
अब आकृति की गर्दन now गयी है
आगे हाथ और पैर बनाते हैं इसके लिए हम bezier tool चुनेंगे
प्रदर्शित की तरह हाथ और पैर बनाएं
हाथों और पैरों दोनों को चुनें fill and stroke पर picker tool उपयोग करके warli art के शरीर से नारंगी रंग का चयन करें
stroke width को बदलकर 2 करें
अब सारे elements को चुनें और उन सबको एकसाथ group करने के लिए ctrl + g दबाएं
अब warli figure तैयार है अब इस warli figure के साथ round pattern बनाते हैं
अब मैं इस figure की एक copy बनाती हूँ और आगे बढ़ने से पहले इसे एक तरफ रखती हूँ
अब मूल warli art चुनें anchor point प्रत्यक्ष बनाने के लिए एक बार फिर figure पर click करें
anchor point पर click करें और प्रदर्शित की तरह इसे नीचे ले जाएँ
edit पर जाएँ clone पर click और फिर create tiled clones पर click करें
dialog box में symmetry टैब में dropdown menu में simple translation विकल्प होना चाहिए
फिर shift tab पर जाएँ per column विकल्प में x value को बदलकर100 करें
आगे rotation टैब में angle के per row और per column parameters को बदलकर 30 करें
नीचे rows की संख्या 1 है columns की संख्या को बदलकर 12 करें
फिर create button पर click करें
canvas पर बने हुए round pattern को देखें
अब कुछ अन्य विकल्पों की कोशिश करते हैं
rotation टैब में angle के per row और per column parameters को बदलकर 10 करें create पर click करें
canvas पर बने हुए pattern को देखें इसे pattern round pattern बनाने के लिए rows की संख्या को 40 करें
create पर click करें canvas पर बदलावों को देखें
इस तरह भिन्नभिन्न angles में patterns प्राप्त करने के लिये आप rotation parameters बदल सकते हैं
round pattern चुनें और उन सभी को एकसाथ group करने के लिए ctrl + g दबाएं
अब हमारे पास canvas पर एक सुन्दर warli art है
अब इसी तरह इसे एक तरफ लाएं
अब कुछ अन्य विकल्पों की कोशिश करते हैं
आगे create spirals tool उपयोग करके canvas पर प्रदर्शित की तरह एक काफी बड़ा spirals बनाते हैं
selector tool पर click करें एक warli figure चुनें और इसे इस तरह spiral के मध्य में रखें
अब tool controls bar पर raise to top विकल्प पर click करें
फिर spiral को भी चुनें
extensions menu पर click करें और generate from path विकल्प चुनें
प्रदर्शित submenu में scatter चुनें
screen पर एक dialog box खुलता है यहाँ follow path orientation checkbox को check करें
space between copies में 5 प्रविष्ट करें
निश्चित कर लें कि
apply बुट्टन पर click करें और dialog box बंद करें
spiral path को दिखाने के लिए spiral warli pattern को थोड़ा s एक तरफ लाएं अब spiral path चुनें और इसे डिलीट करें
इस प्रकार inkscape में कोई भी एक सुन्दर spiral warli pattern बना सकता है
इसी प्रकार हम बहुत से अन्य सुन्दर warli patterns बना सकते हैं
आगे सीखते हैं कि एक border कैसे बनाते हैं
object menu पर जाएँ और symbols पर click करें त्रिभुज आकृति पर click करें और इसे canvas पर लाएं
tool controls bar पर width और height को बदलकर 30 करें
अब त्रिभुज को canvas पर ऊपर बायीं तरफ लाएं
मैं त्रिभुज उपयोग करके एक row pattern बनाना चाहती row
edit पर जाएँ clone पर और फिर create tiled clones पर click करें पिछली सारी settings यहाँ दिखती हैं
rotation टैब में per row और per column के angle पैरामीटर्स को बदलकर 0 करें
shift टैब में per column विकल्प में x को बदलकर 0 करें
अंततः यहाँ प्रदर्शित की तरह नीचे column को 35 करें फिर create button पर click करें
canvas पर बने हुए row pattern को देखें
सारे त्रिभुजों को चुनें और उन सबको एकसाथ group करने के लिए ctrl + g दबाएं
त्रिभुज pattern को duplicate करने के लिए ctrl + d दबाएं इसे पलटने के लिए v दबाएं
अब canvas के नीचे pattern को लाएं
हमारा warli pattern अब तैयार है हम इस pattern को विभिन्न textile डिजाइन assignments में border की तरह उपयोग कर सकते हैं
यह kurti पर इस प्रकार दिखता है
हम इसे pillow cover डिजाइन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं
और यह warli art कपडे के bag पर भी बहुत अच्छा लगता है
अतः उसी प्रकार आप warli art form उपयोग करके अनेक textile patterns बना सकते हैं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
इस tutorial में हमने निम्न बनाना सीखा:
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है एक peacock मोर pattern डिज़ाइन बनाएं
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें